और बहोत सारे ग्लास दिखाई दे रहे हैं जो स्टील के ग्लास हैं जो अलग बहोत ही कारीगरी से सजाए गए हैं।

दिखाई दे रही है यहाँ पर सभी लोग अलग-अलग कलर के कपड़े पहने हुए दिखाई दे रहे हैं बहोत भीड़ है यहाँ पर दिन का टाइम है कुछ लोग फोटो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर।

पर बोरिया उठाते हुए कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर की बोरिये हैं येलो कलर की बोरिये हैं कोई एक ट्रक के अंदर भरते हुए दिखाई दे रहें।

कोई डांस का कॉम्पिटिशन चल रहा है जहां पर लड़कियां अलग-अलग कपड़े पहने हुई हैं ऑरेंज कलर के कपड़े पहने हुई एक लड़की डांस करती हुई दिखाई दे रही है उनकी मैडम फिरोजी कलर की साड़ी पहनी हुई खड़ी हुई हैं।

यहाँ पर पार्किंग के अंदर बहोत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर --